बांध की दीवार पीले रंग से पुती हुई है।

मंदिर का एक मूख द्वार हमें दिख रहा है। जिसके चारो ओर पेड़ लगे हुए हैं।

यह चट्टान के नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है। जिसका रंग सफ़ेद है।

जमींन के फर्श पर टाइल्स लगे हुए हैं। जिसके तारों तरफ एक झाड़ी लगी हुई है।

कुछ पेनो के कवर पीले हैं तथा कुछ के सफ़ेद बा लाल दोनों तरह के हैं।

जिनकी एक सुन्दर तस्वीर है। जिसमें कि रनिंग मशीन दिखाई दे रही हैं।

जिसक जिसके अंदर अंदर छोटे-छोटे बच्चे भैठकर खेल रहे हैं।

इन दीवारों का रंग गहरा कत्थई है तथा साइड में दीवारों का रंग हल्का ग्रीन है।

स्कूल के बच्चे बैनर लेकर खड़े हुए हैं। जिनमें से शिक्षक ने मास्क पहन रखा है।

एक बैनर को तीन लड़कियों ने पकड़ रखा हैं तथा दूसरे को दो लड़को ने।